जहाँ पर ब्लू दो ब्लू कलर के स्लाइड्स लगे हुए हैं और तीन आपस में जुड़े हुए स्लाइड्स हैं वाइट और रेड कलर ।